सुंदर सा सूरज डूबता हुआ--

मूर्ति जो बैठा हुआ है।

जिसके बदन पर ब्लैक और गोल्डन कलर है।

ये फोटो में चेयर्स एंड टेबल्स दिख रहा है।

ब्रिज छोटा सा ब्रिज है वो बना हुआ है।

फैन है एक चेयर है जिसका रेड कलर है।

ये फोटो में एक दुकान दिख रहा है।

दो बच्चे और टी_वी --

गिरा हुआ लकड़ी जो की सूख गया है।

और उसका पीछे पहाड़ खूबसूरत पहाड़।

नदी का ऊपर काफी सारा तारे दिख रहा है।

और काफी बादल दिख रहा है।

ये फोटो में एक कार दिख रहा है।

और फ्लोर में बिछाने वाला कारपेट --

नाव है जिसका ऊपर काफी सारा आदमी चढ़ा हुआ है।

यह फोटो में काफी सारा घर दिख रहा--

ये फोटो में घर का बरांडा दिख रहा है।

वाइट बोर्ड लगाया हुआ है।

एक फोटो में एक रूम है जिसमें टायर रखाया है ब्लैक कलर का।